इस के ऊपर में कुछ लोग देख रहा हूं।

यहां पे एक पार्क देख रहा हूं।

मैं यहां पे एअक गौर दीक रहा हूं।

मैं यहां पे कुछ बॉल देख रहा हूं।

उस घर के अंदर में कुछ टायर भी दिखाई दे रहा है।

मैं यहां पे एक बिल्डिंग देख रहा हूं।

ये यहां पे एक घर दिख रहा हो।

और उस घर के अंदर में कुछ थरिया भी दिखाई दे रहा है।

और छोटा सा भी पत्थर दिख रहा है।

और उस घर की देवाल का रंग है सफेद रंग का।

यहां पे एक बड़ा सा गेट देख रहा हूं।

समुन्दर के अंदर में कुछ पानी भी दिखाई दे रहा है।

के नीचे कुछ बड़ा बड़ा खूंटी भी दिखाई दे रहा है।

एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

उस दुकान के अंदर में एक सफेद रंग का फ्रिज भी रखी हुई है।

उस घर के ऊपर से एक फैन भी लगी हुई है।

इस चेयर की रंग है लाल रंग।

ये एक सफेद रंग की एल्टो गाड़ी भी दिखाई दे रहा है।

मैं यहां पर एक अनुष्ठान देख रहा हूं।

कुछ बड़ा बड़ा घास दिख रहा हो।

ऊपर से एक करेंट का भी देख रहा हूं।